आधा पानी में रहके पूजा छठ माता का करती है और पानी में हरा हरा घास दिख रहा है ब्लैक अण्ड वाइट दिख रहा है।

यहाँ पे केक शॉप है। यहाँ पे सब केक बनाया जाता है और जैसा डिज़ाइन चाहो वैसा केक बनाके रखते हैं आर्डर करने पे और यहाँ पर अभी --

दो केक है एक पिंक कलर में और एक येलो कलर में केक है और --

आसमान भी ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है और छोटे-छोटे घास भी है मैंदान में।

फैक्ट्री है और यहां पे ट्यूबलाइट भी जल रहा है और मुर्गा भी यहां पे मुर्गा-मुर्गी यहीं पे रखते हैं।

पेड़ दिख रहा है रोड दिख रहा है और बाइक भी खड़ा हुआ है। आसमान दिख रहा है और सब मिट्टी का भी जमीन दिख रहा है।

यहाँ पे रेस्टॉरेंट है। रेस्टॉरेंट में टे कुर्सी टेबल सब लगा हुआ है। यहां पे फैमिली के साथ लोग एक लोग आए हुए हैं और यहाँ पे --

पांच रखा हुआ हैं और पाँचों में सब कलर मिक्स है। बहोत खूबसूरत है।

तालाब है। तालाब में स्टीमर है और स्टीमर नाव है यहाँ पे और सब --

यहाँ पे नदी है। नदी में एक नाव दिख रहा है और एक लोग दो लोग नहा रहे हैं। छोटा बच्चा खड़ा है और लड़का बड़ा है जो --

यहाँ पे ये तिराहा है। तिराहा आपका इसलिए यहाँ पर सब फोर व्हीलर जा रहे हैं और टेम्पो भी जा रहे है। रिक्शा और यहाँ पे --

यहां पे बहोत बड़ा मकान है और यहां पे बड़ी-बड़ी खिड़कियां लगी हुई है और यहां पे बोर्ड --

यहाँ पे नदी है और नदी में से मछली निकाला गया हैं। बहोत बड़ा-बड़ा मछली हैं। दो टोकरी हैं और यहाँ पे एक झउवा है।

यहाँ पे बोहोत बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल व्हाइट कलर से पेंट हुआ है और पोटी को निकला हुआ है। डे नाईट कांच लगा हुआ है ग्रीन कलर से।

यहाँ पे बोर्ड है और वाइट कलर से लिखा हुआ है हॉस्पिटल और कार खड़ा हुआ है बाहर और बहौत सा कार सारा कार --